ई बैंक हई और ईके पीछे शिशा के केवाड़ी लागल हई आउ ऑफिस हई |

इमें में पंखा हई इमें पर्दा लागल हई बेडशीट हई आ ई बहुते बड़ा मकान हई |